और नीचे भी टाइल्स बिछी हुई है और कुछ लाइट वगैरह लगी हुई दिखाई और जमीन भी दिखाई दे रही है।

एक लाइट जल रही है और एक कैमरा लगा हुआ है और यहा पे एक ए० सी० भी लगी हुई है और एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक स्वीच बोर्ड भी लगा हुआ है और एक घड़ी भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक मकान बना हुआ है जिसकी दिवाल (दीवार) का कलर व्हाइट और पिंक --

पे कुछ सीढ़िया बनी हुई दिखाई दे रही है और रेत भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक टैंकर भी रखा हुआ है।

एक एटीएम मशीन भी लगी हुई है और एक यहाँ पे कांच लगा हुआ और में कांच लगा हुआ है।

ये खिड़कियाँ भी लगी हुई है और कुछ गमले वगैरह भी रखे हैं यहाँ पे। एक चेयर भी रखी हुई --